दुकान के बाहर रेड कलर मे दुकान का नाम लिखा हुआ है| और यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है जिसमे कुछ लोग बैठे है।

यहाँ पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है काले कलर का| और बड़े और छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कच्ची मिट्टी पथरीली जमीन दिख रही है।

यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर रेल की पटरियाँ नजर आ रही है| और यहाँ पर सीढ़ी नजर आ रही है रेड कलर की और बिजली के खंबे दिख रहे है| बिजली के तार दिख रहे है।

--और यहां पे चक्की दिख रहे हैं खड्डे भी रखे हुए हैं अलग-अलग स्क्रू रखे हैं और गाड़ी के शीशे नजर आ रहे हैं और अच्छे--

--और रोड के में ऊपर बैनर बोर्ड भी लगा हुआ है बिजली के तार दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है।

और यहाँ पर लाइट्स भी रखी गई है और येलो ब्लैक कलर का टायर रखा है दो बैठने के लिए बॉक्स बनी है जिसमें बॉटल्स रखी गई हैं।

तस्वीरे बनी हुई है स्टैचू बने हुवे है| इसमे आदमी औरते बच्चे दिख और एक पेड भी दिख रहा है।

और यहा पे एक टेंट दिखाई दे रहा है| हरे अलग अलग कलर का और एक आदमी दिख रहा है| चश्मे लगा के खड़ा है| लाइटस भी जल रही है तारे भी नजर आ रहे है ।

यहां पर दो घर दिखाई दे रहे हैं| एक सफेद कलर का है और एक बदर चापनी का है और बाउंड्री दिख रही है| सफ़ेद कलर की बड़े बड़े पेड दिखाई दे रहे है ।

उसमे पानी दीख़ रहा है मिष्टी के कलर का और इसमें बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं छोटे पेड़ नजर आ रहे हैं हरे कलर के।

यहां पर एक भगवान की मूर्ति है| दो भगवान की मूर्ति है एक साथ जो की सफेद कलर की है।